फीमेल कैंडीडेट यहां पर एक टूटू रिक्शा खरीद रहे हैं मतलब अर्न करने के लिए टूटू रिक्शा --

हेलो उसके सामने बहोत सारे लोग हैं जो इस बैंक पे आए हैं या फिर काम करने आए है। बहोत सारे। बहोत बाइक भी खड़ा हुआ है।

इस पिक्चर पे हमको दिख रही है स्टूडेंट का पिक्चर जहाँ पे लाइट का बहुत ही अनोखा खूबसूरत सा --

ये आप हमको देखिए ये हमारी प्रकृति का एक खुबसूरत सा नजारा देख सकते हो एक दम पत्थर घस घस के कुछ अलग सा डिजाइन बन रखा है जहाँ पे --

जहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट का एक काम चलती है जहाँ पे भारत लिखा हुआ है।

तो स्टेट बैंक के ए.टी.एम. के आगे एक बहोत लम्बा लाइन लगा रखा है। क्योंकि वहाँ पे कैश उठा सकते हो। तो ए.टी.एम. का एक लम्बा लाइन का पिक्चर इधर है।

यहाँं पर हमको दिख रहे है एक लड़का पानी के ऊपर कुछ यहाँं पे रखा हुआ है जिसके ऊपर खड़ा हो कर पिक खींच है और नीचे देखो बोहोत सारे पानी बेसीकली देख के हमको लग रहा है एक डेम टाइप कुछ है।